यहाँ पर एक कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई है ये राधा जी साथ में है और उस मूर्ति के नीचे रेड कलर है और पिछे की ओर कुछ रेड कलर ही रखा हुआ है बीच में एक चेयर रखी हुई--

यहाँ पर कुछ घूमने की जगह भी दिख रही है एस खेलने-खेलने का सामन भी रखा हुआ है इसमें म जाके घूम सकते है पानी भी बे बह रहा है और कुछ ग्राउंड सा दिख रहा है।

पर कुछ पाँच सात आदमी बैठे हुए है पंखा लगा है घडी लगी है कुछ बलून लगे है।

समुद्र दिखा रहा है समुद्र के बीचो बिच अ पानी बह रहा है और कुछ यहाँ ऊपर टाइप में जगह छूटी हुई हैं यहाँ पर एक स्कूटी भी दिख रही हें एक मकान दिख रहा हें।

और और यहाँ पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए है कुछ फूल के पेड़ लगे हुए है और यहाँ पर लडकियां भी--